यहाँ पे बहुत सारी गाड़िया दिखाई दे रही है गाड़ियों मे जिसमे एक कार है जो ग्रे कलर की है।

प्लेट में बिरयानी यानि चिकन पॉक्स रखे गए है और यहाँ पे एक चटनी है चटनी जो है वो हरे कलर की है मतलब देखने पर लग रहा ये है चिली चटनी है।

इसमें से कुछ लोग पॉलिथीन रखे हुए हैं कुछ लोग फेविकोल रखे हुए हैं और कुछ लोग चूड़ी का सामान रखे हुए हैं।

ये नीचे के साइड में दरवाजे निकाले गए है।

जिसमे से कुछ घास है और कुछ पथरीला टाइप का है।